इस इमेज में हमें एक अं नमकीन और मिठाई की शॉप नजर आ रही--

यहां पर हमें शोकेस के अंदर बहुत सारे पेंस के कलर कलर के डब्बे नजर आ रहे हैं।

शोकेस के अंदर बहोत सारी बुक्स है दीवाल पर दो सर्टिफिकेट लगे हुए--

जोकि एक सिलेंडर दो सिलेंडर के पास में खड़ा हुआ है यह एक मशीन की नाई नजर आ रहा है।

हमें एक बहोत ही बड़ा झरना नजर आ रहा है।

बहुत सारे हरे भरे झाड़ नजर आ रहे हैं इस नदी का पानी बहुत ही साफ है।

यहां जो इमेज में नजर आ रही है यह एक बहोत ही शानदार--

बनाई हुई है यह जिम फिलहाल में खाली है।

इसमें हमें बहुत सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

शॉप है और इसमें एक कॉस्मेटिक का जो शॉप है उसका नाम सद्गुरु कॉस्मेटिक --

यह जो इमेज है इसमें हमें--

यह एक बहोत ही सुंदर सी पिकनिक स्पॉट की जगह है जिसका नाम--

कुछ पुरुष वर्ग के लोग यहां पर अ कैरेट्स में कुछ रखते हुए नजर आ रहे हैं।

लड़के खड़े हुए हैं और एक दो चेयर लगी हुई हैं।

यह इमेज एक ऑटो पार्ट्स की शॉप की नजर आ रही है इस ऑटो शॉप --

इसमें एक बिल्डिंग है और उसकी पास के बिल्डिंग मे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

अ चेयर लगी है उसके ऊपर दो छतरी लगी है यह एक सनबाथ की--

और यह बहोत ही गंदी सी जगह लाइक गैरेज में खड़ी हुई हैं और इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

टेबल है कुर्सियां हैं और टेबल के ऊपर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

इस इमेज में हमें एक येलो कलर की बस नजर आ रही है जोकि--

चादर के ऊपर कुछ अह पुराने सिक्के रखे हुए हैं अह यह सिक्के--

बाइक्स की पार्किंग नजर आ रही है और कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग यहां खड़े नजर आ रहे--

इस इमेज के अंदर हमें एक खाली जिम नजर आ रही है।

यह एक सरकारी ऑफिस की इमेज है जिसमे कि एक लड़की है जो टेबल पर कंप्यूटर पर काम कर रही है।